कितना अच्छा लग रहा है ना की मत पूछिए रोड के किनारे इतना सफाई रहता है बहुत बढ़िया लगता है।

देखिये दिया जल रहा है सब सफ़ेद सफ़ेद साड़ी पहन के इतना मस्त दिया जला रही है ।

कितना सुन्दर लग रहा है इतना सब क्वालिटी का दिया जल रहे है वाह कितना मस्त लग रहे है देखने में कितना भयंकर लग --

ये पार्क है तो इतना अच्छा पार्क है ना मत पूछिए हरा-हरा और पीला कलर घास दोनो टाइप मतलब दोनो का कलर का भुरा रंग है बहुत बढ़िया नजर आ --

यहाँ पानी बोटल के साथ बड़ा --

और रात के समय मे ऐसे भी आदमी को सब चीज सही ही लगता है ।

यहाँ देखिये इतना अच्छा मंदिर है मंदिर का तस्वीर है ये देखिये मंदिर में कितना अच्छा बॉल दिख रहा है हम तो सोचे की भगवान का मुंडी दिख रहा है लेकिन --